ये पानी में पंछी तैर रहा है बगुला है तत्काल ये डायनासुर है ऊपर में।

ये उड़ते-उड़ते जा रहा है और मछ्ली निगल के खा रहा है।